घर है एक चदरा है इस चदरा पे चिन्हा भी लगा हुआ है ये सारे परिवार बाहर है।

कटा हुआ बिखर हुआ है। इसमें एक आदमी है जो पीले कलर का शर्ट पहना हुआ इस- शर्ट पहना हुआ है। रेड कलर का बैग टांगा हुआ है। एक आदमी जो व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है और बहोत सारे आद- एक आदमी चेयर पर बैठे हुए है।